जो बहुत सारे समानो से दूकान भरी हुई हैं जिसमें डोम्स के इरेज़र बोतल ये सारी चीज़े अपने पास वह रखा हुआ है।

पीले रंग की बस है जिसमें गेंदे के फूल से सजाई गई है और नंबर उसका बी आर मतलब इसका ये बिहार का नंबर है।

यह चित्र किसी सुपर मार्केट का है जिसमें चीनी और अन्य उपयोगी वस्तुओं की ढेर लगा के रखी है।

यह चित्र किसी स्कूल असेंबली के फंक्शन का है।

जिसपे विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं पेट्रोल पंप है और आदमी --

जहाँ पे अमर ज्योति के प्रिमिटेड लिमिटेड का बोर्ड है।